बिल्डिंग के जस्ट बगल में देखिए तो आपको एक और बुल्डिंग एक खङि दिखाई वहइहापॆ एक पे एक स्कूटर खडा हुआ है।

यह पर देख रहे तो आपको एक अंकल खड़े हुए है और जो अंदर एक मशीन रखी हुई है उसके ऊपर देखिये कलर का ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है बड़ा सा ।

यहाँ पर देखिये आपको बोट दिखाई दे रही है बोट की डेकोरेशन बोहोत अछि तरीके से कीई यहा पे एक पेयर भी है और देखिए यहा मे एक अंकल बैठे भी है चेयर पर यहा पे एक चैल की रेल लगी हुए है यहाँ पे रिंग भी है बोट बोहोत अच्छी है।

यह पर देखे तो सूक्ति दिखाई दे रही होगी देखे सूक्ति के बगल में एक बाइक होगी बाइक ऊपर एक उन्केल बैठी होगी जीनोने अपने पीठ पर बैग टेंगा हुआ हैऔर देखिए आगे साइड पे देखिए आपको--

तो आपको एक स्कूटर दिखाई दे रहे होंगे देखिए दो स्कूटर है यहाँपे हा और उसके ऊपर देखिये आपको एक ओ-दो बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे ब्लू कलर के उसके नीचे देखिए आपको एक ब्लू कलर की पूरी चॅनेल दिखाई देगी।

उसके ऊपर रेड कलर की लाइट ज्वल रही है और देखिए ओहा पे कुछ पैड़ भी दिखाइ देंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखिये आपको कुछ पैड़ दिखाई देंगे।